एक ढोलक बजा रहा है एक बीन बजा रहा है एक और ढोलक बजा रहा है एक --

यहा पर काम चल रहा है और इस बिल्डिंग के बाहर यहा पर कितनी सारी बाइके स्कूटी और वगैरहखड़ी हैं रोड पर। काफी ज्यादा बाइके खड़ी हैं। आप देख सक --

जिनमें यह फोटो खिचवा रही हैं। जिन्हों ने की साड़ी पहनी है। मोटी है ये और यहाँ पर यह रेड कलर की मेट बिछी हुई है और ग्रीन कलर की मेट बिछी हुई है।